नदी दिख रही है लंबी चौड़ी सी एक अंकल बैठे हुए दिख रहे हैं पत्थर पर बड़े से आगे बड़ी बड़ी पहाड़े दिख रही है।

बहोत सारे लोग दिख रहे हैं घर दिख रहे हैं।

ये एक बड़ा सा हरा भरा ग्राउंड दिख रहा है।

सभी लोग भी दिख रहे है सड़क दिख रही है।

लड़कियां भी हैगी इनमें लड़के भी है पीछे खेत दिख रहा है पेड़ दिख रहे हैं।

ढोल मंजीरा तबला पियानो और भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं।

लाइट्स हैं डेकोरेशन हैं लोग दिख रहे हैं लाइट्स वागेरा भी दिख रही हैं।